जा जिम सेंटर है जहां पर व्यक्ति जिम करते हैं बॉडी बनाने के लिए।

और एक डम्बल पैरों के पास है।

व्हाइट कलर का गद्दा लगा हुआ है।

और इनके दो टीचर इनको समझा रहे हैं।

झोपड़ी के अंदर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं महिला भी है।

और दो वट्टे सीमेंट के पड़े हुए हैं पीले कलर के।

जिसमें बहुत ही हरियाली है बहुत बड़े बड़े पत्थर है।

एक मकान है और नीचे पत्थर बिछा हुआ है।

घर में बहोत ही हरियाली हरियाली घास लगा रखी है।

अलग अलग बॉक्स बना रखे है।

और एक व्यक्ति सीढ़ी में बैठा हुआ है।

और इसमें ट्यूबलाइट भी लगी हुई है।

और इस पे ग्रे कलर के फूल के पर्दे हैं बहुत प्यारे प्यारे।

और इसके ग्राउंड के पिछली तरफ झोपड़ियां हैं।

जिसमें शीशे लगे हुए हैं बहुत सारे--

चुकी यह लाइट से चलती है।

एक रेड कलर का है और पीले कलर का घोड़ा है जिससे कि बच्चे खेलते हैं।

यह एक बहुत बड़ा शोरूम है।